आसमान पर तार नजर आ रहे है ऊपर मे स्टार दिख रहा है जिस पर ग्री कलर ग्रे कलर रेड कलर बना हुआ है।

जिसमें रोशन दाने नजर आ रही है उस के कांच दिखाई दे रहे है और कुछ सफेद दिखाई दे रहा है आसमान नजर आ रहा है सामने की तरफ गेट कुछ चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है।